libreoffice base पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि कैसेः
sql view में sql queries बनाएँ sql sql लिखें
select from और where वाक्यांश का उपयोग करना
और fields और tables के नाम के लिए छोटेबड़े या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करना
sql view में queries बनाने के लिए base का इस्तेमाल करने से पहले लिबर ऑफिस base के बारे में चर्चा करते हैं
base hsql database engine में रन होता है
यह java में लिखित एक open source engine सॉफ्टवेयर है hsqldb पर अधिक जानकारी के लिए इस पर जाएँ
ठीक है अब sql के बारे में सीखते हैं
sql का मतलब है structured query language यह databases में एक्सेस और उनका कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए एक आदर्श language है
यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त ansi मानक है
और इसलिए यह विभिन्न प्रकार के database management systems या dbms में इस्तेमाल होता है
कुछ उदाहरण हमारे खुद libreoffice base mysql microsoft sql server microsoft access oracle और db2 हैं
sql का सबसे सामान्य उपयोग है database से data प्राप्त करना जो querying database के नाम से भी जाना data है
sql का उपयोग database में data डालने data को अपडेट करने या data मिटाने के लिए भी किया जा सकता हैं
और हम इन सब कार्यों को base का इस्तेमाल करके अपने पिछले tutorials में कर चुके हैं
उपयोगकर्ता के अनुकूल wizards और डिजाइनिंग windows का इस्तेमाल करके
किन्तु आधारभूत query language की जानकारी हमें database से query करने में अधिक लचीलापन और मजबूती data है और sql को केवल data को बदलने के लिए नहीं बल्कि database और table की संरचना को बदलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं
चूँकि हमारा tutorial sql के बारे में सबकुछ नहीं बताता है यहाँ कुछ लाभदायक tutorials और उनकी websites हैं
hsqldb के पास खुद के यूज़र guides हैं इन्हें online देख सकते हैं या इन्हें downloaded कर सकते हैं और अपने computer में pdf file के रूप में सेव कर सकते हैं
ठीक है अब कुछ sql सीखते हैं हम अपना परिचित उदाहरण library database खोलेंगे
अब अपना library database खोलते हैं अब बाएँ panel पर queries सूची पर click करते हैं
और फिर create query in sql view पर click करिये अब हम query design शीर्षक नामक एक खाली window देखते हैं
और यहीं sql में हम अपनी queries type करेंगे
अपनी पहली सरल query लिखते हैं और वह है: library की सभी पुस्तकों की सूचनाओं का पता करना
किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए select कीवर्ड की आवश्यकता होगी अतः हम अपनी query इस तरह लिखेंगे
select * from books
यहाँ books table का name है books में बड़े b पर ध्यान दीजिये
names ध्यान से पहले इस्तेमाल किये गये table या column नामों का अनुसरण करेंगे
और * एक wild card है यहाँ इसका मतलब है books table से सारे fields या columns को प्राप्त करिये
अब इसका निष्पादन या now करते हैं edit menu पर click करिये और फिर run query पर click करिये
अब हम ऊपरी panel पर books पर records की एक सूची देखते हैं
हम इस query को या हमारी लिखी किसी भी query को सेव कर सकते हैं और उनको विवरणात्मक names we सकते हैं
अतः यहाँ हमारी पहली सरल query है! यहाँ कुछ सलाह है:
hsqldb database के object नामों जैसे कि tables और column नामों के लिए case sensitive है
मतलब बड़े b में table name books छोटे b में books के समतुल्य नहीं है
किन्तु आसानी के लिए हम सभी बड़े अक्षर या सभी छोटे अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप: books बड़े अक्षरों में या members छोटे अक्षरों में इत्यादि
किन्तु मिश्रित अक्षरों का इस्तेमाल पढ़ने और समझने में सरल हो सकता है उदाहरणस्वरुप: booksissued बड़े b और i के साथ
या returndate बड़े r और d के साथ
अतः हमें table नामों और column नामों को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से वह बनाये गये हैं
sql keywords के लिए जैसे select हम कोई भी अक्षर या मिश्रित अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं किन्तु बेहतर पठनीयता के लिए हम अपने उपयोग में समान रहते हैं
अपने उदाहरणों में हम keywords के लिए सभी बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे
अब अपनी अगली query पर हम इस query को now window में type कर सकते हैं या हम इसे पिछली query के ऊपर लिख सकते हैं
अभी के लिए इसे पिछली query के ऊपर लिखते हैं
चलिए books table से विशिष्ट columns को प्राप्त करते हैंselect title author from books
और query रन करिये हम file menu bar के नीचे भी run query icon का इस्तेमाल कर सकते हैं या keyboard shortcut f5 इस्तेमाल कर सकते हैं
और यहाँ हमारे records केवल उन columns में हैं जिनकी हमें जरूरत थी
ठीक है आगे बढ़ते हैं
चलिए अपनी query के लिए conditions या मापदंड दाखिल करते हैं
हम केवल उन पुस्तकों को पायेंगे जो cambridge के द्वारा प्रकाशित हुई हैं
और हमारी query है select * from books where publisher = cambridge
ध्यान दीजिये हमने एक नया कीवर्ड where दाखिल किया है
एक condition का अनुकरण कर हम कहते हैं publisher cambridge के बराबर है
चलिए अब अपनी query रन करते हैं और हम केवल वही पुस्तक देखते हैं जिसके लिए publisher cambridge है
और इसी प्रकार से एक query में हमारे पास कई प्रकार की conditions हो सकती हैं
चलिए एक query दो conditions के साथ लिखते हैं
केवल उन पुस्तकों को प्राप्त करते हैं जो cambridge द्वारा प्रकाशित हैं तथा जो केवल 1975 के बाद प्रकाशित हुई हैं
और हमारी query है: select * from books where publisher = cambridge and publishedyear> 1975
और where कीवर्ड या वाक्यांश के बाद हम दो conditions देखते हैं
ध्यान दीजिये कि इन्हें and के इस्तेमाल से एक साथ रखा गया है यहाँ and को logical operator कहते हैं
और यहाँ यह conditions को जोड़ने का काम करता है or एक दूसरा logical operator है
बाद में उपर्युक्त query में इनका इस्तेमाल करके इनके बारे में जानिए
अब query रन करते हैं और ऊपर परिणाम देखते है
यहाँ वह पुस्तक हैं जो हमारी conditions से met खा रही हैं
ठीक है बहु conditions को सम्मिलित करने के लिए एक तरीका और भी सीखते हैं
कैसे how केवल उन पुस्तकों की सूची how सकते हैं जिनका प्रकाशक cambridge या oxford है या दोनों हैं
और यहाँ हमारी query है: select * from books where publisher in cambridge oxford
नये कीवर्ड in पर ध्यान दीजिये
यह हमें एक column पर निर्धारित conditions को जोड़ने में मदद करता है इस उदाहरण में publisher है
और अब परिणाम पर ध्यान दीजिये
यहाँ एक नियत कार्य है:
निम्न के लिए अपनी sql queries लिखिए और जाँचिये
1 library के सभी सदस्यों की जानकारी प्राप्त करिये 2 सभी पुस्तकों के शीर्षक की एक सूची प्राप्त करिये जिनकी कीमत rs १५० से अधिक है 3 पुस्तकों की एक सूची प्राप्त करिये जो कि william shakespeare या john milton द्वारा लिखी गयी हैं
चलिए sql के बारे में और अधिक अगले tutorial में सीखेंगे
इसी के साथ हम libreoffice base पर sql view में queries के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि:
sql view में sql queries कैसे बनाएँ
sql sql कैसे लिखें
select from और where वाक्यांश को इस्तेमाल करें
और fields और tables को नाम देने के लिए बड़े छोटे या मिश्रित अक्षरों का चुनाव करें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
यह project